निचे दरी है ब्लू कलर की रेड कलर की यल्लो कलर के भी फुल है।

जगह है वहां पे दो तीन लोग खड़े हुए हैं दो तीन बाइक खड़ी हुई है पेड़ लगा हुआ है ड्रम रखा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है प्लास्टिक का पाइप है।